सामने की तरफ स्कूल का दरवाजा भी दिखाई दे रहा है और कुछ खिड़कियां भी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में हम देखें तो एक जिम की तस्वीर लग रही है यहाँ पर सामने की तरफ हमें एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने की सफ़ेद रंग की टी-शर्ट पहन रखी है।

और बोहोत सारी हरी-भरी घास भी नजर आ रही है पीछे की तरफ देखे तो बोहोत से पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और वह योगा करते हुए नजर आ रही है और उनके सामने की तरफ एक लड़की भी बैठी हुई नजर आ रही है और वह भी योगा कर रही है।

बाहर की तरफ हम देखे तो दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है जो की नीले रंग का है जिस पर लिखा है फीमेल जनरल वार्ड --

यहाँ पर हमें बहोत से लोग दिखाई दे रहे है जो की बैठे हुए हैं और सामने की तरफ एक आदमी दिखाई दे रहा है जो की खड़ा है और उसके हाथ में कुछ पेपर है।

ऊपर की तरफ कुछ पंखे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लाइटें भी लगे हुए नजर आ रही है।